नीचे ब्लू कलर की मैट हुई है।

कुछ बच्चे भी जा रहे है।

एक फ्रिज भी रखी हुई है।

पीछे व्हाइट कलर की दीवार है उसपे मैप भी लगा हुआ है।

ऊपर व्हाइट कलर का आसमान है।

इधर कांच का दरवाजा लगा हुआ है।

डिपोट भी एक लिखा हुआ है।

घास है आगे बड़े इमामबाड़े की तरह है और वहां पे खजूर के पेड़ लगे हैं और बहोत सारी गाड़िया जा रही --

व्हाइट कलर की दीवारें है।